ये सामान्य एक पेट्रोलियम पंप जैसा दृश्य दिखाई दे रहे छे।

सामने एक व्यक्ति लोहिया का सरिया को पकड़ते हुई एक पानी की नलकीको पकड़े हुए दिखाई --

कुछ पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा छे।